यह एक रास्ता है जिसमे ढेर सारा गाड़ी है।

वह साइड में दो डॉक्टर है जो उसका ट्रिटमेंट कर रहे है।

यहाँ यह एक दुकान है।

यह एक पत्थर है जिसमे एक ड्रम भी है।

यह एक दुकान है जिसमें स्प्राइट भी है माज़ा भी है और पानी भी है।

ऊपर पंखा भी है और एक आदमी भी है।

बिर्रियानी के साथ एक जग भी है और पानी भी है।